ये मजदूर सीमेंट और लोहे के सरियों का काम कर रहे हैं।

उनके पास निर्माण से जुड़े औजार भी है।

मुझे कुछ अधूरे बने मकान और मिट्टी के ढेर दिख रहे है।

और ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ हैं जिस पर आमला दहि --

जैसे लेडिस आदमी और बच्चे भी ऑफिस के बाहर छोटा सा गार्डन भी है।

कलर के बड़े कंकर रखे हैं और इसमे एक मशीन है।

दुल्हन ने बहोत सारी ज्वेलरी पहनी है और रेड कलर का लहंगा--

डेकोरेशन की थीम मल्टीकलर है ज्यादातर येलो लोग इनकी फोटो खींच--

इस इमेज में एक मंदिर है उसमें बहोत सारी माता रानी की मूर्तियां हैं।

माता रानी के कपड़े व्हाइट कलर के हैं और एक पंडित पूजा कर रहा है।

बिल्डिंग सफेद और नीले रंग की है बीच में बड़ा --

सबसे आगे वाला बच्चा जिसने सिर पर हाथ रखा है और रेड कलर का टी शर्ट पहना --

यह एक किराने और सब्जी बेचने वाली दुकान की तस्वीर है।

बोरे रखे हुए हैं दुकान का नाम सुभाष स्टोर्स है।

और घर के अंदर व्हाइट कलर के कट्टे रखे हुए हैं एक के ऊपर एक।

इस इमेज मे एक ग्रीन कलर का ट्री दिख रहा है और बाहर कुछ आदमी बैठे हैं और आसमान नीला दिख रहा है।

एक आदमी का चेहरा छुपा हुआ है और एक चेयर भी दिख रही --

जहां पर ब्लैक और वाइट कलर और बड़ी छोटी मच्छी रखी है।

रखी गई स्टील की जड़े कंक्रीट को मजबूती देने के लिए डाली ग --

मशीन के पास एक कूड़ा दान रखा है जिसमें कचरा भरा हुआ है और आसपास भी गंदगी रही है।

कोने में एक झाड़ू रखा हुआ है जो साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता हैं।

आसमान नीला और सफेद है और एक बीच खेल रहा है।

इस इमेज में लग रहा है बहोत बारिश की वजह से पानी भरा है।

और बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी बाइक्स पार्क है और एक साइकिल भी।

यहां ज्यादा लोग नहीं है यह फोटो एक एयरपोर्ट की लग रही है जहां लोग अपना सामान लेने आते हैं।

मंच के सजावट नीले लाल और सफेद रंगों के साथ की गई है।

जिससे यह आकर्षक दिख रहा है छत पर कई लाइट्स लगी है जिससे पता चलता है कि--

मूर्ति ने सुंदर कपड़े पहने हैं और उस पर डिजाइन बना है।

मूर्ति काले और सुनहरे रंग की है जो बहोत सुंदर लग रही है।

दुकान के अंदर रेड कलर की दो चेयर दिख रही हैं।

इस इमेज में एक राशन की दुकान दिखाई दे रही है दुकान में बहोत सारी चीजे दिख रही है।

आसमान में बादल है जिससे मौसम सुहावना लग रहा है।

छत पर लटकते हुए गमलों में पौधे लगे हैं जो इसे सुंदर बनाते हैं।

अ पौधे लगे है इस इमेज में रोड दिख रहा है।

पर उसकी वॉल पर झूमर और वाइट कलर का फैन लगा है।

और इस शॉप के बाहर एक लाइट का मीटर लगा हुआ है।

और ये शॉप बाहर से पूरी कांच की है और शॉप बिल्डिंग --

यह एक दुकान या ब्रांड औरों द लेवल का साइन बोर्ड है।

सीढ़ियां और रेलिंग के पास सजावट और छोटे पौधे रखे हुएं हैं।

डिजाइन में दिख रहे हैं कुछ चूल्हों पर ब्रांड का नाम और डिस्काउंट के स्टीकर भी लगे हैं सभी चूल्हे --

इस इमेज में एक शॉप दिख रही हैं इस इमेज में--

शॉप का नाम है द लाइव केक शॉप फ्रेश टू फ्रेश --

इस दुकान के बाहर एक ब्लैक कलर का रेनकोट लटका हुआ है।

कुएं नज़र आ रहे है। कुछ लोग रुक-रुक कर फ़ोटो भी खींच रहे है।

और एक ब्राउन कलर का टेबल है जिस पर वाइट कलर --

इस शॉप में ब्लैक येलो कलर के बलूंस लगे हैं और ग्रीन कलर के--

बिल्डिंग पीले सफेद और गुलाबी रंग की है और इसमें गोल खिड़कियां और बालकनी --

बिल्डिंग के सामने एक साइन बोर्ड लगा है जिसमें कुछ--

लोग दिखाई दे रहे है बाजार में चहल पहल को दर्शाता है इमारतों पर कई दुकानो और विज्ञापन के बोर्ड ललगे गए हुए है।

आकाश साफ और नीला दिख रहा है जिससे लगता है की यह चित्र दिन --

ये इमेज एक वॉलपेपर की तरह दिख रही है इसमें एक पतला सा रोड दिख रहा है।

उसका नाम किरण टी डेपो है उसके बाहर बाइक्स और स्कूटी पार्क है।

और उसका नाम शारदा है रोड पर बहोत सारे लोग आते जा रहे हैं।

वातावरण बहोत शांत है और आसमान नीला हो रहा है।

और उसके अंदर लोग बैठे हैं और मंदिर के आस पास बिल्डिंग्स और घर भी है।